मार्केट मे एक बड़ा सा पेड़ है जो काफी ग्रीन कलर के उसके ऊपर पत्तियां है काफी लोग खडे है अलग अलग कपड़े पहनके लगता है जैसे कोई लगा हुआ है।

हमारे सामने एक शॉप है जो कलर पेंट वगैरा की दुकान लग रही है दुकान में काफी बॉक्स पड़े हैं एक हेलमेट है।

इस पिक में एक बहुत बड़ा मॉल दिख रहा है जिसमें खाने के सामान पड़े हुए हैं।

मेरे सामने एक घर है जिस पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है।

ब स्कूटी बाइक सब वगैरह रेंट पर मिलते हैं गाड़ी वगैरह वॉश भी होती हैं सर्विस भी होती हैं।